देखिए यहां पर ये एक नई संस्कार आईडी की नई एक कॉलेज वगैरह खोला गया है यहां पर टेक्निकल से रिलेटेड आईडीआई कर सकते हैं इजली --

देखिये गाइस यहाँ पे ये पार्किंग स्लॉट वगेरा है यहाँ पर कितनी ईजिली यहाँ पर गाड़ी वगेरा खड़ी है। ऑटो वगेरा खड़ा है। ऐसे पार्किंग स्लॉट हमें जरुर बनवानी चाहिए अगर हम कोई भी बड़ा मॉल वगेरा खोलते हैं कुछ काम वगेरा करते हैं।

देखिए गाईस यहाँ पर ये बुद्धिस्ट भगवान जी की हमारी मूर्ति है और यहाँ पर देखिये कितनी ज्यादा मुश्किल से ये बनायी गयी होगी इसका डिजाईन देखिये इसके इसके फूलों के छोटे छोटे पत्ते मतलब इन्हें ठोक वोक के बहुत ही साफ से इसे बनाया गया है। इसका डिजाईन बहुत ही औसम लग रहा है।

और साइड में इसकी बाउंड्री भी है और कितना बढ़िया तरीके से यहां पे साफ सफाई भी है यहां पे ऐसी जगह पर हमें घूमना चाहिए सुबह शाम घूमना चाहिए।

यहां घूमने में बहुत ज्यादा मजा आएगा यहां पर सफाई भी काफी है जिससे कोई मतलब हमें घूमने फिरने में कोई डर वगैरह भी नहीं है ऐसी जगह हमें घूमना चाहिए।

यहां पर लोग भाग भीड़-भाड़ तो बहुत कम है लेकिन जब यहां लहरें वगैरह आती है जो बीच में राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आता है और इस बीच पर तो फंस का बहुत ज्यादा और --